यह एक गार्डन की पिक्चर है।

और कुछ पेड़ बोहोत लंबे-लंबे है और खेत खाली दिख रहा है।

लग रहा है ये फुटबॉल टीम है स और खेलने वाली है मैच ।

कुछ लोग दिख नहीं रहे हैं और गद्दा लगा हुआ है और साड़ी बिछी हुई है।

यह एक शॉप लग रही है जिसको बहोत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ है।

गाड़ियों में ऑयलिंग करने से गाड़ियां स्मूद और स्पीड में चलती है।

रक्तदान के लिए लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है।

और छांव में बैठने की जगह भी बनाई गई है ताकि सब आराम से बैठ सके।

पर मुझे थोड़ा ऑफिस जैसा लुक लग रहा है और बोर्ड भी लगा हुआ है।